एक कार के बगल में एक कला वस्तु है । एक बाउंड्री है । बाउंड्री पे एक गेट लगा है । बाउंड्री आधी टूटी हुई है ।